झंडा भी लगाया हुआ है और बाहर एक घर है इधर एल्वेस्टर का जिसमे बहुत सारे --

यहां एक मंदिर है उस मंदिर में पित्तल का मूर्ति बनाई गई हैं।

स्कूल है बहुत बड़ा स्कूल ।

एक दुकान है। उस दुकान को अच्छा से सुंदर से गेट सजाया है। वो दुकान का उद्घाटन कर रहा है।